मुर्गी खाने पीने की चीजों के ठीक पास में गाजर है मूली है टमाटर हैं और ठीक उसके ठीक पीछे के साइड में वाइट कलर की दीवार बनी हुई दीवार के ठीक पीछे के साइड में देखा जाता हैं। एक बड़ी से दिवाल--

व्हाइट कलर का महल नजर आ रहा है महल के पीछे के साइड में गेट लगे हुए गेटों के ठीक पीछे के साइड में के बड़े बड़े दरवाजे दरवाजे के पीछे के साइड में देखा जाए तो बहुत सारा सुंदर--

जैसा कि अपने को नजर आ रहा है कि यहां पर बड़ी सी मल्टी बनी हुई है मल्टी के ठीक पास में एक आदमी है आदमी के ठीक पास मै एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ--

आ रहा है कि आप भूतों पड़े हुए भुट्टे के ठीक पास में देखा जाए तो एक छोटी सी जमीन है जमीन के पास में गांव नजर आ रहा ।

जो की जमीन के ऊपर जो लकड़ियां पड़ी हुई जो की सुखी नजर आ रही है उसके ठीक पास में के सारे पत्ते पत्तों के ठीक पास में एक छोटा सा घर हैउसकी ठीक पीछे के साइड में देखा जाए तो कैसा सामान लगा जो कि अच्छा नजर रहा है।